ब्यूटीफुल नजर आ रहे हैं झरने के--

रोड पे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा हैं जिसमें एक बच्चा शरीर पे--

उस पहाड़ के ऊपर काफी लोग बैठे हुए हैं।

उसके आजू-बाजू ब्यूटीफुल सी ग्रीन ट्री भी दिखाई दे रही --

दिखाई दे रहे हैं जो डांस करने वाले लड़कियों को--

यहां पर एक शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक कैमरे की दुकान दिख रहीं हैं।

रखी हुई दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर पु--

यहाँ पर मुझे एक बकरा दिखाई दे रहा हैं।

और उसने ब्लैक कलर का कुर्ता वाइट कलर का पजामा--